इस पे एक पोस्टर लगा हुआ है इस साइड पार्क में बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं।

रेड कलर की टी-शर्ट पहने हुए है बाजू में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहने हुए है फिर एक बाजू मे व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि स्वेटर पहने --

छड़ी रखे हुए हैं इधर सीढ़ियां दिखाई दे रही है व्हाइट कलर का छत दिखाई दे रहा है।

नीर कुछ ब्लू कलर का पानी टाईप का दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे पत्ते लगे हुए हैं।